इसके चारों ओर हरे भरे घास लगे हुए हैं।

इस दुकान में काफी सारा दवा रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस मंदिर को फूल और लैट से सजाया हुआ है।

इस शोरूम में सीलिंग लाइट भी लगा हुआ है जो कि जल रहा है ।

इस दृश्य में एक छोटा सा मैदान है जहाँ पे कुछ लोग कपड़ा बैठ कर फुटपाथ पे बेच रहे हैं और प्याज भी बिक रहा है।

इस हॉस्पिटल में मरीज को ले जाने वाला एक बेड बना हुआ है जिसका कलर ब्लू है ।

फल दुकान के बाहर एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है ।

रेस्टोरेंट के बाहर एक कार और एक स्कॉर्पियो लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस चट्टानों के बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक होटल का चित्र है ।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

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस मस्जिद के अंदर कुछ लोग हैं।

यह फल दुकान ब्लू कलर का तिरपाल से बना हुआ है।

इस पेट्रोल पंप का पीछे बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं ।

मस्जिद के बाहर एक कार और एक ऑटो भी लगा हुआ है ।

इस फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदुर लोग भी हैं।

एक बहुत बड़ा सा ट्रक भी है।

इस शोरूम में टेबल फैन भी रखा हुआ है।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

रेलिंग फैन भी लगा हुआ नजर आ रहा है।